फूल दिखाई दे रहा है।

बैलून दिखाई दे रहा है।

हरा कल-- कलर का कार्परेट है।

फूल दिखाई दे रहा है घर का कलर वाइट है।

कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं टेबुल दिखाई दे रहा है।

टेबल दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है।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

आसमान दिखाई दे रहा है।

आसमान का रंग नीला है।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

गितार है शीशा है ।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

इस तस्वीर में घर दिखाई दे रहे हैं।

लोहा है कांच है ।

एक पार्क दिखाई दे रहा है।

लाइट बढ़ रहा है।

डीजे लाइट दिखाई दे रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है।

दुकान दिखाई दे रहा है।

कई सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।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

सब काला दिखाई दे रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है।

पोस्टर दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है।

खिड़कियां दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

लड़के और लड़कियां दिखाई दे रही हैं।

पलेट दिखाई दे रहा है।

टेबल दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है।

पानी का बोतल दिख रहा है।

लड़के और आदमी दिख रहे हैं।

लोहा का गेट दिख रहा है वेग दिखाई दे रही है।

बोतल दिखाई दे रहा है।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

बोर्ड दिखाई दे रहा है।

कोपी किताब दिख रहा है।

आसमान का रंग नीला है।

इस तस्वीर में मैरिज हॉल दिख रहा है।

दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

आदमी दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है।

दिख रहा है।

इस तस्वीर में सब्जी मंडी दिख रहा है।

जिसमें खाने पीने का सामान है।

आदमी दिखाई दे रहा है।

पंखे दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे औरत दिखाई दे रहे हैं.

कई सारे कॉपी किताब दिख रहे हैं।

फेवीक्विक दिख रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है ।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

श्रृंगार एवं ज्वेलर्स दिख रहा है ।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

संस्कृति का पोस्टर लगा हुआ है।

फोटो दिखाई दे रहा है।

घर का कलर वाइट है।

इस तस्वीर में घर दिखाई दे रहा हैं ।

तार दिखाई दे रहा है।

झाड़ दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है।

टेम्पल दिखाई दे रहा है।

बेली रोड दिख रहा है पाइप दिखाई दे रहा है।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

आदमी दिखाई दे रहा है।

आसमान का रंग नीला है।

टी-शर्ट है रंग बिरंगी कपड़े हैं।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है।